बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है एक आदमी ने थैला उठा रखा है बिजली की तारें दिख रही है एक बिल्डिंग दिख रही है।

एक आदमी खड़ा दिख रहा है एक महिला स्कूटी पर जाती दिख रही है।

दीवार के ऊपर पंखा दिख रहा है।

एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है वहां पर कुछ आदमी खड़े दिख रहे है एक बड़ा--

एक पार्क दिख रहा है पार्क में कुछ बेंच भी लगे हैं।

बहोत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है एक मोबाइल टॉवर भी दिख रहा है।

दुकानों के आगे बहुत सारे थमले पड़े हैं और वहां पे बहुत सारे मोटरसाइकल और एक स्कूटी भी खड़ी हैं।

और बहुत सारे लोग भी बैठे हैं बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

हेलो के ऊपर रेट भी लिखा गया है।

एक पीले रंग की बस दिखाई दे रही है।

कुछ बच्चे झूला झूलते हुएं दिख रहें हैं।